यखम रोड कर छ दिखेणी फनह म एक और बस छ दिखेण लगीं यखम कई सारा बड़ा बड़ा हरयां भरयां डाला छन यखम कई सारा लोग भी छन बस पर बैठिक लोग एक जगह बिटि दूसरी जगह जांदा छन।

चित्र का अनुसार यख मा जी हम ते एक औरत छा दिखेण लगीं यख मा जी ये माइक पर कुछ बोलन भी छ लगीं कुछ भाषण कर छा देण लगीं।

चित्र का अनुसार यख मा जी हम त जी एक बड़ू कू कमरा छ दिखेण लग्युं ये कमरा हम कई सारा लोग छन दिखेणा।

चित्र का अनुसार यख मा जी हम ते कई सारा लोग छन दिखेण लग्यां यख मा जी आग कर भी छ जगण लगीं यखम रंग बिरंगी लाइट कर कु कुछ झालर कर छ बणायु।

चित्र का अनुसार यख मा जी हम ते एक बड़ी बारिकी नदी कर छा दिखेण लगीं ईं नदी मा जी एक आदमी भी छा दिखेण लग्युं यखम एक बड़ु बारिकु डुंगु कर छा रख्युं।

यख मजी जु छ एक चर्च छ लगण लग्युं। यख मजी जु छ ईसा मसिहा जी तैं पूजदा छन। यखम कुछ कुर्सी बि छन लाल रंग की रखीं। यक दिवाल मजी कुछ ईसा मसिहा जी की तस्वीरें बि छन लगीं।

यखमा जी कई सारा लोग भी छन दिखेण लग्यां यू सफ़ेद रंग की टोपली कर छन पैनी यखमा जी पर्दा भी छ लग्यूं यखमा जी कुछ झालर कर छन दिखेण लग्यां।